रात को ली गई जिसमे हमे दिखाया जा रहा कि मैदान खाली है और इसमे कोई व्यक्ति संभवतः मैदान की रेख देख कर रहा होगा या रेख देख के लिए जा रहा है और मैदान के एक बड़ी लाइट लगाई गई है।

था उन सभी प्रकार के सामग्रियों पे हमे कई प्रकार की बचत वा उनका प्रायः उनकी राशि लिखी गई है कितनी धन राशि मे बेची जा सकती है।

यह चित्र किसी बौद्ध मंदिर के परिसर का है जिसमें हम एक बड़ा दरवाजा देख सकते हैं जो संभवत अंदर जाने के लिए होगा और सामने हम भगवान बुद्ध की प्रतिष्ठा देख सकते हैं।

और यहाँ की जो सड़कें हैं यहाँ भी अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है और सड़कों में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ जो वा --

पेन्टी टी-शर्ट अलग-अलग कलर कलड मे हैं अलग-अलग डिजाइन मे पैंट कि गई है।

या फाइल या फोटो किसी ऐसी जगह की है जो या तो प्लेटफॉर्म है या कोई हवाई अड्डा है।

यह दृश्य किसी सड़क का है जिसमें हम देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ का काफी हरियाली काफी वृक्ष लगे हुए हैं |

यह फोटो किसी रेस्टोरेंट में सर्व कि गई प्लेट की है जिसमें हम देख सकते हैं कि चार इसमें चिकेन लेगपीस रखी गी गयी है जो संभवत बनाए अच्छे ढंग से बनाए गए तथा बीच में एक चटनी व कुछ सब्जियां रखी हैं।

यह चित्र किसी वाटरफॅाल का है या झरने का है जिसमे हम देख सकते हैं कुछ पर्यटक इस झरने के नीचे स्नान कर इसका आनंद ले रहे हैं तथा यह झरना किसी महापर्वत क्षेत्र मे है जहाँ से नदी जहाँ से कोई नदी निकल रही है।

सम्भवता यहाँ मसाज या सैलून मे कार्य किए जाते हैं किए जाते हैं या कोई मेकप रूम है।

इसमें लोग बाल काटने बैठे था कोई था बाल काटने के लिए एक पुरुष बैठा हुआ है जिसने मुँह पे कुछ सफेद कलर का क्रीम पोत रखी है।

इस गाय पे हम देख सकते है कि इस गाय ने गले में लाल कलर का धागा बाँधा हुआ है तथा ये चारा खाते हुए अतित सुन्दर प्रतित दिखाई देती है |

इस जल पूल में हम जल के पूल में हम नहा सकते हैं नहा के आनंदित हो सकते हैं।

यह फोटो किसी नदी कि है जिसमें हम देख सकते हैं कि नदी बह रही है तथा नदी के च-दूसरी तरफ हरियाली है।